इन्होंने लाल कपड़े पहन रखे हैं और यह किसी मैट पर बैठे हैं।

इस चित्र में सी_सी_टी_वी कैमरे लग रहे हैं और लाइट है।

यह चित्र किसी डॉक्टर की अस्पताल का है।

इस चित्र में एक व्यक्ति खड़ा है और दो लाइट जल रही है।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी घर का है इस चित्र पर आसमानी कलर का पेंट हुआ है।

यह चित्र किसी फाइव स्टार होटल का है जहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं जोकि आपस में बातें कर रहे हैं।

यह एक चित्र है। यह चित्र किसी का है जहां पर पेड़ पौधे खड़े है।